और चर्च के दरवाजे के बाहर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह चित्र किसी नदी का है जो कि सामने एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।